पिक्चर में हम देख रहे हैं एक दुकान है उस दुकान में बहोत सारे सामान है।

इस पिक्चर में दिख रहा है कि सामान सब बहोत सारे हैं।

इस पिक्चर में हमें दिख रहा है की एक मॉल है मॉल में बहोत--

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पानी है पूल है और एक वो--

इस पिक्चर में हम देख रहे है कि पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे कार लगा हुआ है बहोत सारे जो कार व्हाइट कलर का है।

है और पानी भी बहुत सारे है।

इस पिक्चर में देख रहे कार ठीक हो रहा है कार एजेंसी में और चक्का-ऊक्का सब कुछ खोल के रक्खे हुए है वो कत्थी कलर का कार है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक कार लगा हुआ है वो कार का गेट खुला हुआ है वो कार वाइट कलर का है।

इस पिक्चर में हम देख रहे एक आदमी ऊपर चल रहा है पहाड़ के ऊपर और पेड़ भी है।